आसपास पेड़ दिख रहे है।

सामने दो गाड़िया खड़ीयहै दो बाइके दो कारे खड़ी हुई है इसको लाल और सफ़ेद रंग से रंगा हुआ है और कांच की खिड़कियाँ लगायी गई है।

एक डेन्टल क्लिनिक का दिखाई दे रहा है जो बोहोत सुंदर है इसमें एक हरे रंग के परदे दिखाई दे रहे है और एक नीली बाइक दिखाई दे रही है।